यहाँ पे बहुत सारे झोले या फिर बहुत सारा सामान रखा गया है एक गैस सिलेंडर एक गैस का सिलेंडर भी रखा गया है साथ में सैंपल के तौर पे बहुत सरे बोरे में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

साथ में एक मैदान के बाहर एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है जो की चौक चौकोर है।

एक व्यक्ति अपने पॉकेट को टटोलता हुआ साथ में वह टोपी पहने हुए भी है।

साथ में वो अपने साथी विक्रेता को देख रहा है क्योंकि इसके पास कोई भी ग्राहक खड़े नहीं है।

टॉप की दुकान जहाँ के एक मालिक और एक ग्राहक या फिर दोनों मालिक फोटो खिंचवाने के मुद्रा में खड़े है।

इसके परिषद में एक बड़ा सा का कुआं भी है।